था इसमें एक ट्रेनर भी है जो बच्चों को एक्सरसाइज सीखा रहा है।

इसके आस-पास काफी सारे पेड़-पौधे है।

सामने हमे बोहत सारे खेत दिखाई दे रहे है इस खेत में कुछ फसल लगे हुए है।

तथा उसके आस-पास घर भी तथा पेड़-पौधे भी हरे-भरे दिख रहे हैं जो काफी अच्छे दिख रहे हैं। काफी अधिक संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।